ऊपर एक बोर्ड लगा है पेप्सी लिखा हुआ है।

इस फोटो में पीछे एक नदी दिख रही है।

इस फोटो में सामने ए_टी_एम दिख रहा है।

किनारे लोहे की रेलिंग लगी है।

रोड के किनारे पार्किंग बनी हुई है जिसमें बहुत सारी गाड़ियां और बस खड़ी हुई है।

पीछे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

रोड के किनारे लाइन से वाइट कलर का पेंट है।

इस फोटो में बहुत सारे सामने गमले रखे हुए हैं।

पीछे पहाड़ भी दिख रहे हैं और आसमान भी दिख रहा है।

इसपर एक रेड कलर की कालीन बिछी है।

कुछ लोग सर पर येलो कलर की टोपी लगाए हुए हैं।

पुल के किनारे पत्थर की रेलिंग बनी हुई है और सामने एक ऑटो भी दिख रही है।

बिजली के खंभे लगे हैं।

इस फोटो में सामने एक शेर खड़ा हुआ है।

रोड के किनारे छोटी छोटी घासे लगी हुई हैं और पक्की रोड बनी है।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

बहुत सारी खिड़कियां भी दिख रही हैं और पेड़ भी दिख रहे हैं।